एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है जो शादी का पंडाल बाहर में दो लोग खड़े हैं जो फोटो खींचा रहे हैं एक बाइक लगी हुई है नीचे कारपेट बिछा हुआ है अंदर जाने की--

यह एक प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर एक स्टेज बना हुआ है स्टेज पे बच्चे प्रोग्राम कर रहें हैं हाथ में झंडा ले के एगो बीच में एक लड़की बैठी है |

बहुत सारी मछलियां बेची जा रही है अलग अलग प्रकार के मछलियां है बड़ी है छोटी है मोटी मछलियां बहुत सारे लोग यहां मास्क पहन कर बैठे हुए है मछलियां बेच रहे है फोन के स्कैनर लगे हुए--